पार्किंग के पास बैठे हैं।

सारे लड़के कंप्यूटर चला रहें हैं।

काफी बड़े टेबल चेयर --

ये ज्वेलर्स की शॉप है।

इसमें तीन औरतें जा रहे हैं।

कुछ यहां प्लास्टिक की चेयर भी पड़ी हैं।